ये जो है दौड़े के वाला है के जो दौड़त है लड़कीमन ह दौड़त है लड़का मन ह दौड़त है बहुत लंबा ग्राउंड है।

एकदम मस्त लग रहा है आसमान भी दम नीला कलर का है एकदम खुले जगह है एकदम मस्त लग रहा है। ----

नीचे से एदम छोटा-छोटा बाल है उससे छोटा है फिर उससे छोटा है मस्त लग रहा है ये।